यह एक पार्क है। यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है। साइड-साइड दो-तीन गो पेड़ लगा हुआ है। नीचे ग्राउंड है। एक अ एक हाईस्कूल नज़र आ रही है। बोहोत ही ब्यूटीफुल देखने में लग रही है। ऊपर खुला आसमान है। यहाँ आके आप खेल सकते हैं बैठ सकते हैं।

एक दो मंजिल रेस्टोरेंट बना हुआ है। बोहोत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया है। लाइटनिंग लगी हुई हैं चारों तरफ। दो आदमी जा रहे हैं। दो आदमी जा रहा है रेस्टुरेंट में खाना खाने के लिए। आप अपने फैमिली के साथ भी आ सकते है यहाँ पे फ्रेंड के साथ आ सकते है। गर्लफ्रेंड के साथ --

एक क्रिश्चियन का जीजस क्राइस्ट है जो बुक लेके खड़ा हुआ है। पिलर बना हुआ है। लाल पीला ब्लू से सजा हुआ है। ऊपर खुला आसमान है। अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है। एक पोस्टर भी --